घर के पीछे बहुत बड़ा पेड़ भी है।

उसका पीछे बहुत सारा घर है।

एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

घर का कलर हरा टाइप में है।

पीछे दो घर दिखाई दे रहे है जिसमे खपरा लगा हुआ है।

यहां हमें बहुत सारा कपड़ा रखा दिखाई दे रहा है।

मन्दिर के अन्दर एक कुर्सी भी दिखाई दे रहा है।

मंदिर के ऊपर एक बैनर लगा हुआ है जिसमें मारवाड़ी ब्राह्मण संघ देवघर लिखा हुआ है।

सामने हमें बहुत सारे व्यक्ति एवं लेडीज है।

वो सड़क पर चल रहे हैं।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

यहां सामने बहुत सारे आदमी एवं औरत सोए हुए है।

एक औरत खड़ी है जिसने नारंगी कलर का साड़ी पहनी हुई है।

एक आदमी झुका हुआ है जिन्होंने ब्लैक कलर का शर्ट और ब्लू कलर का जींस पहना है।

आलू छोटे हैं कुछ बड़े बड़े आलू हैं।

सामने हमें बहुत सारा आदमी बैठा हुआ दिखाई दे रहा है।

यह एक बहुत बड़ा होटल दिखाई दे रहा है।

दीवाल पर फोटो टंगा हुआ है आइसक्रीम का।

जिसमें शिसा लगा हुआ है।

बैलून का कलर ब्लैक एलो है।

सामने हमे एक बहुत बडा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

उसके आगे बोर्ड पर बेदंगा लिखा हुआ है।

इस सैलून का नाम न्यू ताज हेयर सैलून है।

उसका बगल में एक शीशा का गेट भी लगा हुआ है।

मच्छर मारने वाला बैडमिंटन भी है।

नीचे उन्हें खाने के लिए दाना भी दिया गया है।

पीछे बहुत सारा फूल लगा हुआ है।

रेड कलर का चूड़ियां भी पहनी हुई है हाथ में।

जिम में शीशा लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां पे दो कंप्यूटर दिखाई दे रहा हैं।

बागल में एक छोटा सा पंखा भी है।

हमें एक बहुत बड़ा हॉल दिखाई दे रहा है।

उसके आगे एक ब्लैक बोर्ड भी है।

हमें यहां तीन लड़के दिखाई दे रहे हैं।

पेड़ के बीच में रेड कलर का हेल्मेट रखा हुआ है।

जिसने हमारे देश का झंडा पकड़ा हुआ है।